एक सैलून दिखाई दे रहा है नाई के दुकान में नाई के दुकान मे एक लड़का नीले कपड़ा ओढ़े बाल कटवाते हुए बैठे दिखाई दे रहे हैं।

एक शादी हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

एक मोबाइल शॉप दिखाई दे रही है जहा ऊपर वोडाफोन बुक वर्ल्ड लिखा दिखाई दे रहा है रात का समा दिखाई दे रहा है शॉप पे दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे है।

यहां एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ में एक लड़का बॉटल में पानी पीते दिखाई दे रहा है जसमे--